टेबुल हैं कप हैं बिस्किट हैं बोर्ड हैं पर्दा हैं बेड ह--

यह फोटो में बहुत सारे औरत पूजा कर रहे हैं।

यह फोटो में बड़े बड़े पहाड़ हैं पेड़ ह--

घास हैं फूस हैं पत्थर हैं ईटा हैं।

चकास है पीर है पत्ता है ईटा है रोड है लाईट है पाइप है।

जूता है हाईनेक है पैंट है फूल है तार है पेड़ है--

घास है फुस है फूल है बैठ ने के लिए है ईटा है आकाश है--

यहां मंदिर है फूल है लाइट है पंखा है पाइप है बल्ब है ऐ_सी है माला है।

मोती है सीधी है कोर्ट है शर्ट है टी शर्ट है पंडीजी है प्लेट है।

यह फोटो मंदिर है लाईट है बढ़िया सजा हुआ है गाडी है आइना है आदमी है।

जूता है चप्पल है आकाश है रात है बोल बर रहा है पंखा है।

कुर्ता हैं आदमी हैं औरत हैं मोबाइल हैं।

फूल का पेड़ हैं पत्ते हैं--

यह फोटो में ए_सी हैं लाइट हैं पंखा ह--

बाल्टी हैं सिक्कर हैं चैन हैं--

कूलर हैं टेबूल हैं पौद पर्दा हैं गेट हैं--

यहाँ फोटो में अदमी है घर है सीसा है सिड़ी है बुयाम है --

पाइप हैं डब्बा हैं लाइट हैं पंखा हैं बल्ब हैं।

बॉल पेड हैं पत्ते हैं आकाश हैं--

सरदारनी है ईटा है मिट्टी है छत है।

बैग है शर्ट है पेंट है लाइट है शीशा है गेट है सीढ़ी है बल्ब --

उस्टर गाडी हैं टायर हैं मोटर काद है।

प्लास्टिक है फाइबर है आईना है लाइट है बल्ब है इंडिकेटर है साइलेंसर है इंजिन है।

और सारे सामान हैं तरह तरह के सामान सब हैं।

टेबुल है कुर्सी है आदमी है स्वीटर है फोटो बना हुआ है केमरा है।

या फोटो में बड़े बड़े घर है बड़े बड़े बिल्डिंग है बैनर लगे हुए है पेड़ है पत्ते है।

लाइट हैं शीशा हैं पर्दा हैं।

ए_सी है शीशा है लाइट है डिब्बा है बोतल है।

या फोटो में केक है क्रीम है आइस क्रीम है केक है ठंडा है चॉक्लेट है मशीन है।

बीज है जाली हैं शीशा हैं लाइट हैं।

पेंट हैं चप्पल हैं जूता हैं सीरी हैं।

यहाँ फोटो हैं मशीन हैं लकड़ी हैं आदमी हैं।

यह होटल है यहाँ पे सूर्य भगवान का परछाई आ रहा है छत है सीढी है।

यह फोटो मे सैलून हैं बाल कट रहा हैं ट्रेमर ह--

टी शर्ट हैं जीन्स हैं चप्पल हैं आदमी हैं जूता ह--

फेस वॉश है पानी है गिलास है रेजर है।

यह फोटो में भोज हो रहा है खाने का समान है टेबुल है पेंट है जूता है आदमी हैं।

ऑरेंज हैं येल्लो हैं घर हैं मंदिर हैं अच्छा--

यहाँ फोटो में दुकान है डिब्बा है पानी ख्या बोतल है लाइट है।

यह सैलून है फेसवॉश है ड्रॉप है तौलिया है बाल काट रहा है कैंची है।

जिओ का बैनर है जिओ का सिम है गाड़ी है पं बॉल है पंखा है दुकान है।

गेट हैं ओप्पो सर्विस सेण्टर हैं बगल में--

स्कूल है स्कूल बस है स्कूल मैजिक है मोटरसाइकिल है चार चक्का है साइकिल है करकट है।

घड है साइकिल है गाड़ी है मोटरसाइकिल है ग्रील है गेट है पेड़ है पत्ते हैं।

लाइट बल्ब हैं पंखा हैं।

ये एक कॉलेज है बैंक है मिटटी है पानी है गेट है घास है पेड़ है पेड़ में पत्ते है।